चारों तरफ है झाड़ी और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

कुछ भी कराया जाता है इसमे बहुत सारे चेयर और एक पंखे भी दिख--